यहा लाइट लिसी हुई है जो दिखाई दे रही है कुछ खोके रखे हुए है जो दिख रहे है।

जो मिर्ची हात मे रखे हुए है। मिर्ची रखी हुई है। जो दिखाई दे रही है। एक क्रीट मे आलू रखे हुए है। जो दिखाई दे रहे है। एक प्याज की कट्टी दिखाई दे रही है।

यहा पर फूलों की माला टंगी हुई है जो दिखाई दे रही है एक गुलदस्ता रखा हुआ है जो दिखाई दे रहा है यहा पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है कमरे के अंदर।

यहा पर एक मंडप सा दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक गुम्मट बनी हुई है गुम्मट मे कुछ फूल लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है।